हार डलें हुए हैं बीच में एक बॉक्स रखा है और चारो तरफ अलमारियाँ बनी हुई हैं।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

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमे एक अ एक महिला दिखाई दे रही है जो की अपने नृत्य का प्रदर्शन करके कर रही है ।

इस तस्वीर में हम देख सकते है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे है बहुत बड़ा बहुत मैदान दिखाई दे रहा है ये है एक पार्क की तस्वीर है सामने में ऊपर --

सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने सफ़ेद कलर का कुरता पजामा और सफ़ेद कलर की टोपी पहनी हुई है नीचे जहानाबाद बिछी हुई है जिनका कलर हरा है ।

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें एक शॉप के हमें एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में एक शोकेस है ।

यह शोकेस लाल अ लाल कलर का है उसमें काँच लगे होंगे ऊपर कुछ बोतलें लेके रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं और कुछ आइसक्रीम --

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल के चारो तरफ छोटी-छोटी और कही बड़े-बड़े घास दिखाई दे रही हैं और बच्चो के--

इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा य यह एक साड़ी की दुकान है जिसमे हर तरह की साड़ियां एक शोकेस बना हुआ है जो गुलाबी और काँच का बना हुआ है ।

डिफरेंट - डिफरेंट तरीके से अपनी-अपनी कला अ कला दिखा कर बोहत चीज़ें बना रहे हैं।

तस्वीर में देख सकते है बहुत बड़े-बड़े पहाड़ चारो तरफ बड़े-बड़े पहाड़ है और ऊपर ब्रिज है ।